के साथ साथ बैलून भी लगाया हुआ है।

ये फोटो में बरा सा दो बिल्डिंग दिख रहा है।

टिन के अंदर बहुत सारा लोग दिख रहा है।

बिल्डिंग में बहुत सारा खिड़की दिख रहा है।

पीछे साइड में बहुत सारा दुकान दिख रहा है।